नमस्कार builtin functions in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम विभिन्न प्रकार के builtin functions के बारे में सीखेंगेजैसे arithmetic functions
string functions
input/output functions और timestamp functions
हम इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system और gedit text editor 3201
आप अपने पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको इस website पर पिछले awk tutorials को देखना चाहिए
आपको किसी भी programming भाषा का कुछ ज्ञान होना चाहिए जैसे c या c ++
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया उन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
कॉल हेतु awk के लिए builtin functions हमेशा उपलब्ध हैं
पहले हम arithmetic functions के बारे में सीखेंगे
int function x को एक integer value में बदलता है
exponential function x का exponential देता है
log function x की वास्तविक logarithm value returns करता है
sin और cos क्रमशः sine x और cosine x देता है
कृपया ध्यान दें कि argument x radians में उल्लिखित होना चाहिए
इन functions को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं
मैंने पहले ही arithmetic underscore function dot awk file में code लिखा है वह code files लिंक में उपलब्ध है
यहाँ हम क्रमशः positive और negative number का square root प्रिंट कर कर रहे हैं
आगे हम क्रमशः positive और negative number के लिए integer value प्रिंट कर रहे हैं
फिर हम छोटे number और बहुत बड़े number का exponential प्रिंट कर रहे हैं
उसके बाद positive और negative numbers का वास्तविक logarithm printed होते हैं
हम 052 radian की sine और cosine values भी प्रिंट कर रहे हैं जो वास्तव में 30 degree है अब टर्मिनल में फाइल का निष्पादन करें
ctrl alt और t कीज दबाकर terminal खोलें
cd command का उपयोग करके उस folder पर जाएं जिसमें आपने file को downloaded और extracted किया है
awk type करें awk spacef space arithmetic _ function awk और आउटपुट देखने के लिए एंटर दबाएं
इस output से कुछ चीजें स्पष्ट हैं
sqrt function positive number का square root देता है
यह nan या not a number returns करता है यदि number negative है
int किसी भी positive या negative number का खंडित integer देता है
exp number का exponential देता है यदि number बहुत बड़ा है तो function inf रिटर्न करेगा
positive number का वास्तविक logarithm log function द्वारा दिया जाता है
यदि number negative है तो function nan returns करता है
sine और cosine functions समरूपी values return करता है आप अपने कैलकुलेटर का उपयोग करके values सत्यापित कर सकते हैं
अब random functions देखते हैं
rand 0 और 1 के बीच कोई भी random number returns करता है लेकिन कभी भी 0 या 1 returns नहीं करता है
उत्पन्न numbers एक awk निष्पादन में random होंगे
लेकिन awk program के भिन्न निष्पादनों में पूर्वानुमेय होंगे
srand x random function के लिए seed value x प्रदान करने के लिए उपयोगित है
x की अनुपस्थिति में seed value के रूप में दिन की तारीख और समय का उपयोग किया जाता है इन्हें एक उदाहरण के साथ समझते हैं
मैंने random function के लिए code लिखा है और इसे random awk में सेव किया है
यहाँ for loop में rand function 0 और 1 के बीच random number तैयार करेगा
फिर तैयार number को 50 से गुणा किया जायेगा और printed होगा
अतः यह code 50 के भीतर 5 random numbers तैयार करेगा
terminal पर जाएं और file निष्पादित करें terminal को साफ करें
type करें: awk space hyphen f space random dot awk और enter दबाएं
देखें यह 5 random numbers see रहा है
क्या होता है यदि हम code को फिर से निष्पादित करते हैं
पिछली निष्पादित command को प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं और enter दबाएं
हमें we output मिल रहा है जिसका अर्थ हैं awk script के प्रत्येक निष्पादन के लिए random numbers का समान set तैयार कर रहा है
तो हम प्रत्येक निष्पादन में random numbers का नया set कैसे प्राप्त कर सकते हैं
for loop के पहले type करें srand function
file को सेव करने के लिए crtl और s कीज दबाएं
अब terminal पर जाएं
पिछली निष्पादित command प्राप्त करने के लिए अप arrow की दबाएं और enter दबाएं
यह random numbers का भिन्न set set रहा है
अतः हम srand function का उपयोग करके random numbers का नया set तैयार कर सकते हैं जब यह argument के बिना उपयोग होता है
आगे कुछ string functions देखेंगे length function विशिष्ट string s की लंबाई दर्शाता है
index function बड़े string s1 में string s2 की position निर्धारित करता है
उदाहरणस्वरूप index parentheses में double quotes में linux comma double quotes में n 3 returns करता है एक उदाहरण देखते हैं
awkdemo txt file खोलें
हम जानते हैं कि awkdemo txt file में प्रत्येक छात्र का 4 अंक का roll number है
typing error के कारण roll number में अंकों के गलत number हो सकते हैं
terminal पर जाएं terminal साफ करें
अब दिखाए गए अनुसार command type करें यहाँ हम जाँच कर रहे हैं कि 1st फिल्ड की लंबाई 4 के बराबर है या नहीं
यदि नहीं तो वह विशिष्ट record printed होगा एंटर दबाएं
देखें यहाँ एक roll number s02 है जो गलत टाइप किया है
इसमें तीन अंक हैं जबकि अन्य सभी में चार अंक हैं
substr s a b function बड़े string s से substring extracts करता है
मैं parameters समझाती हूँ
यहाँ s string है
a s में position निर्दिष्ट करता है जिससे extraction शुरू होगा
b characters के number निर्दिष्ट करता है जो extracted किए जायेंगे एक उदाहरण देखते हैं
awkdemo txt file पर जाएं
roll numbers का पहला अक्षर hostel code दर्शाता है जहाँ विशिष्ट छात्र रहता है
मानिए हम उन छात्रों की सूची पता करना चाहते हैं जो hostel a में रह रहे हैं
वह प्राप्त करने के लिए terminal पर जाएं
यहाँ दिखाए गए अनुसार command type करें
यहाँ हम $1 से निर्दिष्ट string लेते हैं
जैसा कि हम जानते हैं $1 पहले field का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे मामले में roll number है
आगे हम substring extract करते हैं जो एक character लंबाई के साथ position एक से शुरू होता है
फिर यदि यह capital a के बराबर है तो वह line file से printed होगी आउटपुट को देखने के लिए एंटर दबाएं
हमें उन छात्रों की सूची मिल गई है जो hostel a में हैं
हमने function split पहले देखा है अतः मैं यहाँ विस्तार से नहीं समझा रही हूँ
कृपया पिछले awk tutorials देखें यदि आपको को संदेह है
यहाँ कुछ अन्य functions हैं जो input/output से संबंधित हैं
awk हम awk command के माध्यम से unix command date now करेंगे
terminal में यहाँ दिखाए गए अनुसार command type करें और एंटर दबाएं
output के रूप में terminal पर आज की तारीख और समय प्रदर्शित होता है
awk हमें यह क्यों चाहिए हमने awk command का केवल begin section रखा है
वास्तविक दुनिया में हम आवश्यक output प्रदर्शित करने से पहले system date print करना चाह सकते हैं
ऐसे मामले में हमें awk command से system commands को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी
यहाँ कुछ functions time stamps के साथ कार्यवाही करते हैं जैसे systime strftime आदि
इन functions के बारे में जानने के लिए internet से browse करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इस tutorial में हमने builtin functions के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखा जैसे arithmetic functions string functions input/output functions और time stamps functions
नियत कार्य के रूप मेंawkdemo txt फाइल का उपयोग करके प्रत्येक रिकॉर्ड के आखिरी फिल्ड को प्रिंट करने के लिए एक awk प्रोग्राम लिखें
जहाँ तीसरे अक्षर के रूप में छात्र का name छोटा u है
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और online tests पास करने पर प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में अपनी समयबद्ध queries post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद